एक काला टीशर्ट पहना हुआ है।

और इस घर में बहोत सफेद गोरा छीटा दिया है।

यहां पर एक कम पानी वाला नदी है।

जहां पर तीन नाव खड़ा हुआ है।

और एक बेल्ट भी है।

एक रोड भी है रोड में बहुत सारा लाइट भी है लाइट पोस्ट भी है।

और पेड़ भी है बहुत सारा।

और दूर में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भी है।

और एक भाई माथे पे हाथ देके उसका बाल ठीक कर रहा है।

और एक का बोर्ड भी है और बालों में इस्तेमाल किए जाए वाला बहुत सारा चीज भी है।

और पीछे एक वाल भी है।

यहां पर बहुत सारे फल देखा जा रहा है।

अ हरे बक्शा भी दिखाया जा रहा है और एक बोर्ड में एटी लिखा है।

यहां पर एक बहुत सुंदर सा हरा भरा गार्डन है यहां पर बहुत सारा फूल है छोटा बड़ा पेड़ है।

अ बहुत सारा टूटी फूटी यन्त्र भी है।

बहुत बच्चा है उम्म पूरे--

यहां पर एक बाइक का शोरूम दिखा रहा दिख जा रहा है जो लाल रंग का है।

बाहर एक अ अ पटाखा भी है और एक सफेद कार भी है।

अह पताका के सामने एक रंगोली है।

और ऊपर पंख भी है।

यहां पर बहोत गारी ऑटो है और मोटरसाइकिल भी खरा हुआ है।

यहां पर कारन का पोस्ट और अ बहोत सारा चीजे हैं।

यहां पर एक सैलून है जिसमें एक बाई ओर एक लड़की की बाल वॉश कर रही है।

ये पॉलिथीन ऊपर दिया हुआ है।

बड़ा बिल्डिंग भी देखा जा रहा है।

एक लाइ पोस्ट भी है।

और अपने बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा टीन दिखा जा रहा है।

ऊपर लाइट है फैन है और ऊं अंदर बै बाहर एक पोस्टर भी है।

यह ब एक बड़ा एक ए_सी भी है।

एक हमें एकटा गैरेज देखा जा च्छे--

आसमान नील कलर का है।

और यहां पर बहुत लाल कलर का चेयर भी है।

नीचे बहोत सारा पानी भी है।

इसका रंग सफेद कलर का है।

एक बाइक नील कलर का है और अंदर बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है।

चेयर का रंग लाल और काला रंग का है।

प्लेट सफेद कलर का है।

और प्लेट के अंदर जलेबी के पानी निकाल आया है।

और एक रोड है जिसमें लोग और ऑटो ख़रा हुआ है।

बहुत सारा लाइट दिखा जा रहा है।

छत के ऊपर सिंटेक्स भी है।

और बहुत हरा भरा जंगल भी है बहुत सारा पेड़ पौधे है।

और एक बिल्डिंग से करेंट की तार ओ और एक बिल्डिंग पे जा रहा है।

और एक फल का पेड़ भी है उसमें फल भी है।